बिजली के तारे नज़र आ रही है तथा पीछे की तरफ आसमान --

तरफ नीले रंग की छोटी सी दुकान साफ देखी जा सकती है जिसके साथ ही में अंदर की तरफ एक व्यक्ति--

ती है जिसके पीछे की तरफ काफी बड़े - बड़े पेड़ लगे हुए है तथा लोहे के खम्भे भी नजर आ रहे है जो की काफी ज्यादा बड़े - बड़े है जिसके साथ --

कुछ व्यक्ति एक नदी में मिट्टी के रंग के पानी में छोटे मोटे पेड़ पौधे ऊगा रहे है पीछे की --